वहां से खुला आसमान भी नजर आ रहा है आसमान सफेद कलर का है।

सुखे सूखे पेड़ भी दिख रहा है।

यहां पे एक बहुत बड़ा काउंटर भी है जिसमें द मोबाइल सिटी विवो लिखा गया है।

यह एक छोटा सा रूम का दृश्य है जहां पर एक आदमी खड़ा है एवं उसके चेहरे पर ब्लर किया गया है।

एक बड़ा सा चट्टान का दृश्य है जहां पर एक आदमी खड़ा होकर सेल्फी खिंचवा रहा है।

यह एक बड़ा सा हॉल दृश्य है यहां पर एक आदमी कराटा सिख रहा है।

एक साइड एक युवती दरवाजे के पास खड़ी है और वह साड़ी पहनी हुई है।